जिसमें की विभिन्न प्रकार की लाइटें दिखाई दे रही है जिम का सामान व्हाइट व--

ब्राउन यल्लो ग्राउंड फ्लोर यहां पे हमें ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें एक मकान दिखाई दे रहा है जिसमें खिड़कियां--

और पीछे कुछ प्लस का साइन भी दिखाई दे रहा है।

और यह सामान कुछ व्हाइट कलर ब्लैक कलर और ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में हमें बहुत सारे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी बैंक के सामने खड़े हुए हैं और बैंक के सामने ही एक--

लगी हुई दिखाई दे रही है।

व्हाइट कलर की शर्ट पहनी है और--

ग्रॉसरी का सामान दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ ग्रीन कलर के पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

इस फोटो में हमें बहुत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है ब्लैक कलर का रोड है।

घर जैसा कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है और येलो कलर की हमें--

और साथ ही यहां पर बहुत सारी लाइटें है और कुछ शॉप जैसा दिखाई दे रहा है।